यह बुद्ध परिविटी आई.टी.आई. माँ टी कॉलेज है। यह कॉलेज है बड़ा है और इसके आगे तीन बाइके एक साइकिल लगी हुई है। यहाँ आई.टी.आई. की तैयारी करवाई जाती है और बच्चे को पढ़ाई --

यह एक ऑफिस है जिसमे दो चेयर अ क पी कलम गुलदस्ता बेंच पे बहुत सारे रखे हुए है खिड़की है बहुत सारी चीजे है।